यहाँ पर तीन आदमी खड़े हैं और एक आदमी के हाथ में कुछ है। यहाँ पर एक कलर तीन चेयर हैं।

यहां पर एक डस्टबिन भी रखी है। यहां का फ्लोर पत्थर का है।

हम्म हम्म यहाँ एक बेड है यहाँ दो पिलो रखे हैं यहाँ पर एक कम्बल रखा है।

यहां पर कुछ डब्बे रखे हैं। यहां पर फेविक्विक है। यहां पर पानी की बोतल है। यहां पर साबुन रखी है। यहां पर बच्चों की चिप रखी है।

यहाँं कुछ पोर्टल्स भी है एक बैग रेड कलर का और एक ब्लू कलर का और एक येलो कलर का --

यहां पर बहुत सारे पत्थर भी है और यहां पर बहोत सारे पेड़ भी हैं।

यहाँ पर एक दीवार है जिसपर ईट दिख रहीं हैं।